और यहां पे फर्श भी स्टाइल्स और लाइट्स लगे हुए हैं।

अ उसमें बहोत सारे काई जमे हुए हैं ग्रीन ग्रीन और उसमें पत्थर भी बहोत सारे भरे हुए हैं।

गेट के सामने छोटे छोटे गमलों में फूल लगाए गए हैं और बादल दिख रहे हैं जो कि सफेद दिख रहे हैं।